देख सकता एहा पूरा यहाँ कोनो दिसते नखे अउ पूरा आकांत लकोनू न दू रोलर कोस्टर के देख सकत ह रउरे मन पूरा --